बोर्ड के बगल में हमें एक बड़ी सी दीवार नजर आ रही है जो कि ब्लू और व्हाइट कलर से पेंटेड है।

यहां हमे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच नजर आ रही है।

यह एक जानवरों के दवाखाने की जगह हो रहा है।